यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे यहां पे कपड़ा है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये कपड़े का दुकान है।

और इसमें दो-दो इंडिकेटर आगे और दो इंडिगेटर पीछे होते हैं| देखने में बहोत ही अच्छे लगते हैं और इसमें चार चक्के भी होते दिखने में बहोत अच्छा है यहाँ पे ।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

यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये गुलाब का फूल है जो की बहोत ही अच्छे देखने में लगते हैं और ये लाल लाल है और इसके पत्ते पूरा हरे हैं। देखने में बहोत ही अच्छे लगते हैं।

और यहां पे मैंगो जूस भी है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यह सभी फ्रीज में है जो की बहुत ही अच्छे और फ्रीज में बहुत ही अच्छे से रहते हैं क्योंकि ये इसमे खराब नही होते हैं ठंडा के वजह से बहुत ही अच्छे--

आप देख रहे है यहाँ पर बहुत सारे फल है जो की यहा पर सेब है संतरा है केले है अंगूर है बहुत ही अच्छे लगते है देखने मे बहुत ही अच्छे लगते है अनार भी है काफी सुंदर है बहुत ही अच्छे --